स्कूल के बाहर एक आदमी गाड़ी पर बैठा है।

यहां एक पंखा भी लगा हुआ हैं।

यहां दो आदमी भी खड़ा है।

बहुत सारी मिठाई भी रखा हुआ है।

यहां बहुत सारे बेंच तथा कुर्सी भी लगा हुआ है।

रेस्टुरेंट का नाम मां भगवती रेस्टुरेंट है।

यहां एक पर्दा लगाया हुआ है।

एक पर्दा भी दिखाई दे रहा है जिस--

यह एक मंदिर का दृश्य है।

जो देखने में बहोत सुंदर लग रहा है।

पॉल के खंभे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

छोटे और बड़े दोनों पौधे भी बहोत सारे लगाए गए हैं।

मोबाइल का कभर टंगा हुआ है।

जो देखने में बहोत सुंदर लग रहा है ।

यहां फूल का भी एक पेड़ है।

सफेद रंग का टी शर्ट और काला रंग का पैंट पहनी हुई है।

एक आदमी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर रहा है।

यहां का नजारा बहोत अच्छा लग रहा है।

बहोत सारा वाशिंग मशीन भी रखा है।

दोनो साइड बहोत पेड़ है दिखाई दे रहे है।

यहां एक बहोत बड़ा पहाड़ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।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

यह एक दुकान का दृश्य लग रहा है।

रोड में एक आदमी जा रहा है।